और साथ ही मे एक छोटा सा घर भी है।

इस दुकान का नाम रविंद्र जनरल स्टोर है जिसमें मोबाइल नंबर भी दिया गया है।

दीवार पर एक बहोत ही सुंदर भगवान की--

जहां पेड़ों को काटकर बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है और माली पेड़ों पर कुछ काम भी कर रहा है।

कुछ कीबोर्ड्स हैं और अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट हैं।